यहां पे दो लड़का और दो लड़की रनिंग कर रहे हैं।

और रूम में बोल बर रहे हैं एस्मोसम किया हुआ है।

इसमें दो आदमी बैठे हुए हैं और लाइट बहुत बर रहा है और यहां पर बहुत सारी कुर्सियां भी है।

आ उसपे समान रखे गए हैं और यहां पे सीसा के रैक बनाए गए हैं।

बहुत सारे समान आउ रूम के कलर व्हाइट है।

यहां पर बहुत सारे खंबे हैं जो काला कलर का है लाइट बर रहा है और बहुत सारे पंखे लगाए गए हैं।

तस्वीर भी चिपकाए गया है बहुत बड़ी सा।

और यहां पे स्कूटी भी लगा हुआ है शटर भी है और बड़ी सी बोर्ड लगाया गयी है।

यहां पे बहुत सारे बाइके लगी हुए हैं।

यह एक घर है घर में खिड़की दरवाजे भी लगाया गया --

और यहां पे मशीन रखा गया है और लाइट बर रहा है।

उसमें पर्दा उढ़ाया गए हैं और यहां पर बहुत सारे घास हैं जो हरा भरा है और बाउंड्री मारा हुआ है।

और दूल्हे सज धज के तैयार है और लाइटें भी बर रही है और पीछे परदे लगाए भी गए हैं।

यह एक रूम में योगा कर रहे बहुत लोग--

बहुत सारे सीढ़ी भी लगाया गया है।

यह एक कपड़े का मॉल है।

यहां पे लाइटें भी जल रही है।